यहाँ पर मूर्ति उठाई गयी है और यहाँ पे कई लोग पूजा करने दर्शन करने आये हैं| और यहाँ कितने अच्छे से सजाये गए हैं और सभी व्यक्ति यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं।

यहाँ पर शादी का फंक्शन मनाया जायेगा इसलिए यहाँ पे सजवन भी किया जा रहा है।

यह एक जिम है जहाँ पे हम लोग जिम करने से हम स्वच्छ रहते हैं।

और यहाँ पे कई प्रकार के बंडलस रखे हुए हैं जिससे हम चेस्ट बॉडी हैंड सब मजबूत कर सकते हैं।

यहाँ पे ट्रेफिक्स में फँसे हुए लोग का तस्वीर दिखाया गया है।